तथा बहुत सारे बैलून का एक बंडल है।

जिसके सामने में एक व्यक्ति अपने आप को खड़ा हुआ पाता है तथा फ़ोटो खींचा रहा है।